बड़ासा किला दिखाई दे रहा है इसमे कलर्स हरे कलर का है दिन के समय है बिजलीके खंबे दिखाई दे रहे है बिल्डिंग मे बहुत सारी खिड्किया दिखाई दे रहे दरवाजे दिखाई दे रहे है।

लाइट दिखाई दे रही खिड़की दिखाई दे रही झाडिया दिखाई दे रही दिखाई दे रहा रात का समय है।

यहा से बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है दूर दूर तक पेड़ दिखाई दे रहे है बिजली की खंभे दिखाई दे रहे है मोबाइल के टॉवर दिखाई दे रहे झाड़िया दिखाई दे रही घास दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है बहुत सारे खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे है गार्डन दिखाई दे रहा है नीचे में घास दिखाई दे रहा है झाड़िया दिखाई दे रहे फूल दिखाई दे रहे।

बड़ा सा फॅन दिखाई दे दीवारमे पेंटिंग दिखाई दे ड्रैगन दिखाई दे मिकी माऊस दे रहा हैं ग्लास दिखाई दे रहा थाली दिखाई दे रहा टेबल दिखाई दे रहा कुर्सी दिखाई दे रहा बीर्यानी दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे है भारत माता का फोटो दिखाई दे रहा है दरवाजा दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहे खंबे दिखाई दे रहे पेड़ के पत्तिया दिखाई दे रही है।

दूर मे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

ईसे बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है बिजली की खंबे दिखाई दे रहे हे बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहा हे घर दिखाई दे रहा है बाउंड्री वाल दिखाई दे रहे आसमान मे बहुत सारे बादल दिखाई दे रहे।

यह एक पेट्रोल पंप का तस्वीर है यहा पर पेट्रोल पंप का मशीन दिखाई दे रहा बाहर मे एक बड़ासा पोस्टर दिखाई दे रहा।

यहाँ पे बहुत सारी व्यक्ति दिखाई दे रहे है एक कुत्ता दिखाई दे रहा बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है बिजली के खंबे दिखाई दे रही है झाड़ीया दिखाई दे रही है।

ये एक बुक डिपो का तस्वीर है यहाँ पर बहुत सारे पेन दिखाई दे रहे है ग्लू दिखाई दे रहा है।